एक सड़क पे बस खड़ी है जिसमे एक लड़का अंदर जा रहा है एक आदमी उसके सामने से जा रहा है और एक महिला भी जा रही है।

तस्वीर मे नीला आसमान सफ़ेद बादल दिख रहे है और एक बड़ी सी झील है और झील से दूर हरियाली दिख रही है।

इस तस्वीर मे तीन मंज़िला इमारत है और उपर की तरफ अंग्रेजी मे इसका नाम लिखा है।

इस तस्वीर मे मिस्त्री काम कर रहा है और पीछे दो सफ़ेद गाड़िया खड़ी है और एक मोटरसाइकल और एक साइकील खड़ी है।

इस तस्वीर मे कुछ मूर्तिया दिख रही है बैठी हुई और उनके दाए-बाए तरफ कुछ खंबे है लगे हुए।